कोई जगह है जिसमें आने जाने के लिए रास्ते हैं | रास्ते के साइड-साइड में पे हरी-हरी घास है रास्ते के साम रास्ते में लोहे की गेट लगा हुआ है।

रसे से पेड़ दिख रहा है और एक मकान दिख रहा है। मकान जोकि दो मंजिला ह् । मकान के सामने कोई पेड़ खंभा है।

घर है। घर के सामने बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं और घर के सामने कोई बैठा हुआ है। घर में बहुत सारी खिड़कियाँ दरवाजे हैं। लोहे की जालियाँ लगी हुई हैं।

कोई जगह है। आने जाने के लिए यहाँ बस लोहे की गेट लगी हुई है और लोहे की --

ग्राउंड बनी हुए है। उनमें लोहे की जलियां लगी हुई हैं। ग्राउंड के ऊपर से तार गया हुआ है।

जगह के अंदर जाने की जगह के ऊपर घोड़े पे चढ़े हुए आदमी का पुतला बना हुआ है।

कोई जगह है जिस में लोहे की गेट लगी हुई हैं जो कि चैनल गेट । ऊपर मंदिर है। नीचे तीन चार सीढ़ियाँ हैं। सीढियों म के ऊपर खिड़कियाँ लगी --

कोई जगह है जगह के सामने से दो तार गये हुए हैं| लोहे की सीढियां है जगह में लोहे की गेट लगा हुआ हैं तीन चार सीढियाँ हैं आसमान दिख रहे हैं बहुत ऊपर में भी एक तार गया हुआ हैं। साइकिले वही खड़ी --

एक कार खड़ी हुई है जिस-अ सामने दो तीन आदमी खड़े हुए हैं। गमले पे पेड़ लगे हुए हैं।

कोई जगह है। जगह की साइड साइड में लोहे की जालियाँ लगी हुई हैं। जगह में के ऊपर से तार गया हुआ है और साइड साइड में बोहत सारे पेड हैं जो बड़े-बड़े हैं और कुछ पेड छोटे भी हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो की हरे भरे हैं फूल हैं जो की हरे घर जो दो मंजिला हैं।

कोई जगह है। जगह में बड़े बड़े फुग्गे हैं। जगेह के सामने लो हम्म घांस की पट्टी है।

उम्म कोई जगह है। जगह के सामने जिओ आईडिया फोर जी का पोस्टर लगा हुआ --

कसरत करने की जगह है जहाँ पे बहुत सारे काले-काले कसरत करने की जगह है।